यहा पर एक लंबा सा हॉल जेसा दिख रहा है जहा पे नीचे मे टाइल्स लगा है जो व्हाइट और भूरे कलर का है। और ऊपर मैं व्हाइट कलर की लाइटे लगी है।

नीचे मे बोहोत सारी हरी हरी घासे लगी है।

यहा पर एक बड़ा सा नदी जेसा दिख रहा है। पानी ब्लू कलर का दिख रहा है। साइड साइड मे बोहोत सारे हरे भरे--

और एक छीन का पेड़ दिख रहा है और एक बड़ा सा पत्थर रखा है और बहोत सारे बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है पहाड़ दिख रहा है हरे-हरे घास दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक मंदिर जैसा दिख रहा है बहुत सारे लोग दिख रहे हैं कुछ लेडिसे से बैठी हुई है और ऊपर बहुत सारा झंडा लगा हुआ है एक आकाश झूला पीछे दिखाई दे रहा है।